और एक दि एक घर दिखाई देरा वो बी वो भी बहुत सुंदर है कुछ गेट लगी हुई है वो बी--

हे एमो मन दिखाई देव खूबसूरत लग रहा है कुछ आदमी भी दिखाई दिए है काम करते हुए वह भी बहुत खूबसूरत लग रहे है यहाँ पर बिजली के खंभे भी दिखाई दिए है वो भी ट्रेन की पटली बन रही है यहाँ पे --